ये किसी का कु किसीका मकान है जहाँ लाइट उ उ और झालर वगेरा खूब लगा हुआ है।

यहाँ प्रोग्राम हो रहा है जैसा लग रहा है बाहर मे सड़क मे मोटरसाइकिल वगैरा पार्किंग किया गया है अंदर में --

यहाँ शायद कोई प्रोग्राम होने वाला है जिसमें आदमी जुट रहै है।